यहां पास में डंडे लगे हुए हैं यहां पर तीन टायर पड़े हुए हैं।

आस-पास कुछ लाइट्स भी लगी हुई है पीछे की दीवाल का रंग सफ़ेद है यहाँ पास में एक सफ़ेद रंग का पंखा भी लग रहा है।

यहाँ एक बस नीले और सफेद रंग की खड़ी हुई है यहाँ आस-पास कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक रोड दिखायी दे रहा है और यहाँ बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक चर्च भी दिखाई दे रहा है।

इसमें कोई देवी की मूर्ति बनी हुई है और आस-पास भी --